और बुस यहाँ बहुत सारे लोग भी दिख रहें हैं अलग-अलग जगह --

यहाँ पे हमें एक गेट दिखाई दे रहा है।

ये तो स्कूल दिखाई दे रहा है जैसा स्कूल का ग्राउन्ड है।

आज छुट्टी का दिन है और स्कूल का ये बरंडा है।

यहाँ पे सारे सारी चीज़े दिखाई दे रही हैं सारा समान लेते है हम।

और वर्कआउट करने भी आ रखी --

दो नदियाँ बहती हुई नदी दिख रही है।

यहाँ पे एक पंडाल जैसा दिख रहा है।

जहां पे ए मुझे लगता है रहना खाना की व्यवस्था होती है।

और शो पीस शो पीस में भी ऐसे पौधे घर में लगाए जाते है बहुत सुंदर भी लगते हैं।

यहाँ पे मुझे तालाब बाना दिख जैसे दिखाई दे --

और उस तरफ इस तरफ की पे जो गाड़ी चल रही है गाड़ी खड़ी हो रखी है।

बहौत सुंदर ये गेंदे के फूल हैं जोकि हमारे घर मे क्या पहाड़ों मे बहौत सारे होते हैं बहौत सुंदर भी हैं हम इनका यूज ज्यादा दीपावली मे भी करते हैं माला भी बनाते हैं सुबह-सुबह भगवान जी कि पूजा मे भी करते हैं और गेंदे के फूल शादियों मे भी बहौत काम आते हैं और बहौत सुंदर भी लग --